इस इमेज में यहां पर एक बंगला दिखाई दे रहा है जहां पर रंगीन लाइटे जलती हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कई सारे खाने के पैकेट्स रखे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है और यहां पर पब्लिक अंदर जाती हुई नजर आ रही है।

इस इमेज मे सामने एक दृश्य सुंदर सा नजर आ रहा हैं जहां पर बादल भी दिखाई दे रहें हैं।

इस इमेज में यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लोग कुर्सी पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में यहां पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है जिसने हेयर कटिंग करवा के रखी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर दो लोग दिखाई दे रहे हैं जो धागा बनाने का काम करते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर छत पर कुर्सी टेबल रखे हुए है सामने एक लड़की भी खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में यहाँ पर एक बस दिखाई दे रही है और कुछ पैसेंजर भी बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे यहां पर एक रोड दिखाई दे रही है उस पर कार और मोटरसाइकेल चलती हुई नज़र आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है और बारिश गिरती हुई भी नजर आ रही है।

इस इमेज मे यहां पर नर्सरी दिखाई दे रही है और बाहर ऑरेंज कलर का डस्टबिन भी नजर आ रहा है।

इस इमेज मे यहां पर एक बांध दिखाई दे रहा है जहाँ पर देखियेगा दो कपल फोटो खींचाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक रोड दिखाई दे रही है सामने एक बड़ी सी इमारत भी नजर आ रही है।

इस इमेज मे यहां पर एक बृंदावन दिखाई दे रहा है जिसे अ कनक वृंदावन नाम के जाना जाता है।

इस इमेज में यहां पे गेट के पास में एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें त्रिमूर्ति देव अपार्टमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है।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

इस इमेज में यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है और यहां पर बॉक्सिंग किट बड़ा सा टायर भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर देखिएगा कागज पर बच्चों ने ड्राइंग बनाई हुई दिखाई दे रही है जो काफी खूबसूरत लग रही है।

इस इमेज में यहां पर एक बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है बाहर तीन व्यक्ति नजर आ रहे है।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर गेट दिखाई दे रहा हैं बाहर बोर्ड पर राजकीय मंदिर श्री नरसिंह जी लिखा हुआ नजर आ रहा हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहाँ पर एक रास्ता दिखाई दे रहा हैं और यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी इमारतें भी दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में दिखेगा यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है टेबल कुर्सी पर कुछ लोग बैठकर खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में दिखेगा यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है और देखिएगा एक पेड़ के पास में एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई नजर आ रही है।